कांच लगे हुए है और यहाँ पे कुछ आईने लगे हुए है बड़े और यहाँ पे--

और यहां पर कुछ घर भी हैं और एक अंकल बैठे हुए हैं।

फिर कुछ पेड़ भी है यहाँ पे एक पर्दा भी है।

ये एक एक्सोसाइस की दु ये एक्सोसाइस है यहाँ पे एक्सरसाइज होती है।

और यहाँ पे बहोत बड़ी-बड़ी चट्टाने हैं और यहाँ पे दूर-दूर तक घर हैं और यहाँ पे पेड़ भी हैं।